एक काउंटर के ऊपर वैक्स की मशीन हुई है दो काउंटर टेबल है जिसका रंग पिंक कलर है।

पीछे कुछ त तारे हैं और तीन इलेक्ट्रिक के खंबे है।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अंदर एक कपड़ों की दुकान है जिसका नाम ओरों द लैब है।

यह एक खेत है खेत के अंदर बहुत सारी गाय खड़ी है।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

बाहर तीन स्कूटर नजर आ रहे है।

यह एक लेबोरेटरी जैसा नज़र आ रहा है।

मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े --

एक झाड़ पेड़ के ऊपर लपेट रहा है।

उसके ऊपर एक कुत्ते और बिल्ली का चित्र बना हुआ है।

बेड के ऊपर कुछ मैकेनिक का समान रखा गया है।

मिठाई की दुकान मे अनेक अनेक तरह की मिठाइयां रखी है।

एक मिठाई एप्पल के शेप मे है।

दुकान का नाम साईं कृपा फिशिंग मटेरियल है।

यह एक घर जैसा नजर आ रहा है घर के वहां पर दो दरवाजे हैं।

जिसका नाम बंसरी लेडिस टेलर है उसका शटर खुला हुआ है और बाजू के शटर बंद है।

शटर के ऊपर एक तोरण लगा हुआ है और बाजू में एक मीटर बॉक्स भी है।

शेल्फ के अंदर कुछ खाने पीने की चीजें है।

और उसके बाजू में एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

जिसका नाम जय जलाराम फास्ट फूड है।

डैम के बाजू में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं।

बैरियर के दूसरे पार भी बाइक और स्कूटी नज़र आ रही है।

और पीछे एक नदी भी नज़र आ रही है।

एक टेबल भी नजर आ रहा है जिसपे कंप्यूटर और प्रिंटर है।

उसके ऊपर एक बैनर है जिसपे लिखा है ऑर्गेनिक फूड हब --

शादी के हॉल मे दो दूल्हा दुल्हन की कुर्सियां लगी हुई है।

दीवार के ऊपर एक सुंदर सा झुमर लगा हुआ है।

पंडाल का रंग येलो और ग्रीन कलर है।

दो नारंगी कलर के गैस नजर आ रहे हैं।

नारंगी वाले तीन बर्नर और एक दो बर्नर वाला है।

जिसके वहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

जिसके अंदर अनेक रंगों के फूल है।

ऊपर सीलिंग पर भी कुछ फूल लगाए गए है।